अर एक आदमी येल्लो कलर के शर्ट में खड़े हुए हैं| उधर बहुत सारे बाइक है उधर एक आदमी नीचे आते हुए--

यह पे बहोत सारे आदमी नजार आ रहे हैं| कोई जुलूस वागेरह जा रहा है बहोत आदमी है इधर |